यहाँ पर ग्रीन ग्रास दिखाई दे रही है मैदान काफी बड़ा नज़र आ रहा है यहाँ पर खेलने में काफी अच्छा लगेगा प्लेग्राउंड काफी सूंदर लग रहा है प्लेग्राउंड काफी अच्छा दिखाई दे रहा है |

स्लाइडर दिखाई दे रहा है स्लाइडर लोहे से बना हुआ है स्लाइडर में सीड़ियाँ लगी हुई हैं। यहाँ पे दो बच्चे खेलते हुए नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे एक लड़का दिखाई दे रहा है जो स्लाइडर पे खेलते हुए नज़र आ रहा है पीछे कुछ पेड़ दिखा दे रहे हैं। पेड़ काफी हरे-भरे दिखाई दे रहे हैं।

मीटिंग रूम नजर आ रहा है यहां पर काफी सारे लोग दिखायी दे रहे हैं। काफी सारी लाइट दिखायी दे रही हैं यहां पर काफी सारी चेयर दिखाई दे रही हैं। यहां पर काफी सारा सामान दिखाइ दे रहा है।

समान है यहाँ पर काफ़ी सारी सब्जी दिखाई दे रही है। यहाँ पर दिखाई दे रही है यहाँ पर दिखाई दे रहा है यहाँ पर गाजर दिखाई दे रही है। पीछे फल टंगे हुए हैं पीले केले दिखाई दे रहे हैं।

यहाँ पे काफी सारी ट्रक जमी रखी हुयी है। एक सेल बना हुवा है सेल बैंगनी कलर का है। बैग में पन्नी में कपडे पैक रखे हुए है बैग रखी हुयी है खाफी सारी स्वेटर पीछे दिखाइ दे रहीं है । सामने एक गेट नजर --